यह एक रोड दिखाई दे रहा है। यहां पे चाट पकोड़ी के ठेले लगे हुऐ हैं। ऑटो खड़े हैं बाइक सवार बाइक से जा रहे हैं। एक ही लेडिस फोन पे बात कर रही है।

और सामने से दो चौराहे के आसपास से गाड़ियां भी निकलती दिखाई दे रही हैं।

यह बोहोत (बहुत) ही बड़ी मछली हैऔर यहां पर मछली मार्केट है। छोटी-बड़ी मछलियाँ सभी तरह की मछलियाँ है।

चाय की दुकान दिखाई दे रही है इस पर कुल्हड़ बिस्कुट सभी रखे हैं | कूड़ेदान भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे लोग चाय पीने --